और ये देखने में एकदम खुबसूरत लग रहा है।

यहाँ हम मतलब साइड में नाला उला है।

हां इसपे बोर्ड लगा हुआ चर --

और ये भारतीय स्टेट का बैंक है अच्छा सा --

कहाँ का है नहीं है मुझे नहीं पता और साइड में मेडिकल है।

ये एक बड़ा सा कॉलेज है जिसका नाम है गुरुकुल डिग्री कॉलेज ।

पीला सा एक बड़ा सा मकान है।

और इसमें मतलब बड़ा सा टाउन का पिक्चर लग रहा है साइड में मम्म मकान सब भी है।

ये एक बड़ा सा ग्राउंड लग रहा है वो बैडमिंटन का लग रहा है।

ये एक नेचर पिक्चर है और ये देखने में एकदम --

एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसमे दो तीन ताला है।

और एक साइड दोनो साइड नीचे वाले फ्लोर में शटर बंद है।

और उसके साइड में एक दुकान लग रहा है वो साइड में घर सब भी है।

और इसमें किराना आइटम भी मिलता है एक बंदा सौदा ले रहा है।

और उसके पीछे पेड़ सब लगा हुआ है।

और इसके बगल में --

और साइड में लग रहा है ओवर ब्रिज है।

बहुत सारे या --

इसमें फेविकोल काट के डिब्बा सामने रखा हुआ है।

और जो बंदा सामने से --